ये एक बड़ी सी नाव है जिसमें टायर लगे हुये है एक दो तिन चार पाँच टायर है।

किला है लाल किला का साइड वाला हिस्सा जो है रेड कलर का है जिसमे एंट्री करनी देख सकते है वह लोग बैठे है।

इसमें सीढ़ी बनी हुई है ऊपर के लिए और सन इलेक्ट्रॉनिक सामान बिजली से चलते --